इसके अंदर बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

यहाँ पर गद्दा भी रेड कलर का गद्दा की नजर आ रहे हैं।

ऊपर कई सारी पंखे लगे हुए हैं।

यह एक माचिस का तीली का आकार का बना हुआ है।

का साइड में डी_जे बॉक्स भी लगा हुआ है।

यह मां दुर्गा माता का प्रतिमा है।

दो आदमी के माथे पर पगड़ी बांन्हा हुआ है।

इसके नीचे बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं।

एक आदमी मछली बेच रहा हैं और तीन आदमी वहां पे मछली खरीद रहे है।

यह एक प्लंबर का दुकान है

यहां पर दो बच्चे फिसल रहे हैं।

जिसका की अभी अभी उद्घाटन हो रहा है।